ओह हो ये तो बच्चों के हैं। बच्चों के नहीं लड़कियों के हैं। अरे लड़कों का भी लड़कियों की कित्ती सारी गुड़ियाँ हैं।

कैसा लगा मेरा मजाक।